फिश रखी हुई हैं इनमें से कुछ फिश बड़ी लग रही हैं कुछ छोटी दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में मुझे एक चर्च दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर मुझे कुछ फादर्स दिखाई दे रहें हैं इन फा इन सभी के हाथ में --

कुछ लोग बाइक पर सब्जियों के थैले ले जा रहे हैं। यहाँ बारिश हो रही है। कुछ लोगों के हाथ में छाता दिखाई दे रहा है। पीछे बड़े-बड़े --